एक बच्ची फ्रॉक पहनी हुई है आसमान नजर आ रहा है और पीछे में पेड़ भी दिख रहे हैं और एक आंटी ऑरेंज साड़ी पहने हुए दिख रही है।

यहाँ पर बाहर में दो बाईकें लगी हुई हैं और एक पेड़ र दिख रहा है। उसके अंदर ग्रीन लाइट जल रही है। अंदर बोहो बहोत सी लाइटें नजर आ रहीं हैं।

आखों पर चश्मा है और दो हाथों को जमीन की तरफ टीका कर बैठे हुए दिख रहे हैं।

यहाँ एक आंटी रेड कलर की ड्रेस जो की थोड़ी चमकीली है पहने हुए डांस कर रही है जमीन पर कालीन बिछा हुआ है।